कुछ हरी शेड दिख रही है।

इस चित्र में हमें कॉफी की दुकान दिख रही है लाइटें लगी हुई हैं बोटल नजर आ रही हैं।

इस चित्र में हमें कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं रेत गिट्टी पड़ी है वो छत बना रहे हैं।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

कुछ हमें छुर्री मुर्री दिख रही है।

फसल बोई है पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

लोग नजर आ रहे हैं रंगबिरंगी लाइटें लगी हैं।

कुछ गाड़ियां दिख रही हैं एक कार खड़ी है।

इस चित्र में फूल दिखाई दे रहे हैं एक चित्र लगा है।

भगवान की कृति क्रिया चल रही है सजाया गया है ओरतें नजर आ रही हैं।

एक काली गाड़ी है एक गाड़ी का रंग सफेद है।

आसमान में बादल हैं पेड़ दिख रहा है नारियल का एक औरत ने बुर्खा पहना है लोहे का दरवाजा है।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

इस चित्र में एक डेयरी दिख रही है।

इस चित्र में द पब्लिक हाउस दिख रहा है यह एक रेस्टोरेंट है ऑटो रखा हुआ है बेंचें लगी हुई हैं।

इस चित्र में एक ग्राउंड दिख रहा है।

इस चित्र में मेला लगा हुआ है एक आदमी दिख रहा है जिसने सफेद शर्ट पहनी है।

कुछ तार दिखाई दे रहे हैं।

एक पानी की बोतल दिख रही है।